यह मूर्ति भगवान् स्वामी तुलसी दास का है जो दिखने में बहुत ही सुन्दर और बढ़िया है | भगवान् स्वामी तुलसी दास बहुत ही अच्छे और प्रसिद व्यति थे ।